गणेश जी की प्रतिमाएं दिखाई दे रहे यहाँ पर सभी आदमी आकर ये गणेश जी की प्रतिमाएं --

यह दुकान में बहुत सारी छोटी-बड़ी --

बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सी सुन्दर योगा करते हैं यह योगा करने से शरीर स्वस्थ रहते हैं।

यह हॉस्पिटल है यह हॉस्पिटल काफी बड़ी है इस हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर रहते है यह डॉक्टर काफी बड़े रहते है यह डॉक्टर --

मौसमी भी खाने के चीज़ मिलते हैं यहाँ पर और भी सारे खाने-पीने के सामान मिलते हैं यहाँ सभी आदमी आकर यहाँ पर खाना खाते है यहाँ पर नास्ता करते है ।